--इहर एगो घर हवै जेकर अगल बगल में पेड़ पौधे लगिस हवै अउ बीच में रोड बनल हवै।

खेत हवै जहाँ साग सब्जी खेती बाड़ी करल जाथे जहाँ पेड़-वेड भी लगल हवै।